यह एक गर्ल है जो की रेड कलर की ड्रेस पेहना है स्टेज है उस पर गर्ल डांस कर रही है रेड कलर की मेट है सामने कई सारी कुर्सियाँ रखी हुए हैं गाइस काफी अच्छा इमेज है।

इमेज मे गाइज हैयर सैलून का इमेज है एक भैया खड़े हुए है कटिंग कर रहे है कुर्सी रखी हुई है काफी अच्छा इमेज है अट्रेकटिव लग रहा है।